ये एक सरकारी स्कूल का व्यू है जो कि हापो के दाढ़ी वारनेर का है।

कुछ व्यक्ति बैठे पढ़ाई कर रही है।

कुछ व्यक्ति गाड़ी लोड करने के लिए कट्टों को लेके जा रहे हैं।

कुछ मिट्टी के लोग बनाई हुई है।